बच्चे लोग किताब लेके कुछ बैठे हुए है कुछ कलाकारी भी दिखा रहे है बच्चे लोग जिसमे मैडम भी खड़े हुए है और पीछे दीवाल है और बॉर्डर जो बना हुआ है लाल कलर ऑरेंज कलर का बना हुआ है।

ये मलदिर है। मलदिर में भगवान सब हैं।